सामने ये बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जोकि ग्रे कलर में दिख रही है इसके ऊपर का हिस्सा पिंक कलर में दिखाई पड़ रह है। वहा पे गुम्बज जैसा बना हुआ है | सामने रेलिंग दिखाई पड़ रही है जोकि ब्लैक कलर भी दिखाई पड़ रही है।

ने एक अलमारी दिखाई पड़ रही है जो कि ब्राउन कलर की है। बीच में व्हाइट कलर की सी पट्टी दी हुई है। सामने एक हम्म टेबल जैसा बना हुआ है जो कि ऊपर का हिसा व्हाइट कलर का है। नीचे ब्राउन कलर में दिख रहा है।

सामने एक सोफा दिखाई पड़ रहा है जो कि ब्लैक रंग का दिख रहा है। सामने एक टेबल है जो कि ब्राउन रंग की दिखाई पड़ रही है। उस पर एक स्प्रे भी रखा हुआ है।

सामने एक ऑरेंज कलर का आसमान दिखाई पड़ रहा है जो कि सूरज चम की चमक दिख रही है। ऊपर ग्रे कलर में दिख रहा। सामने एक मीनार जैसा दिख रहा है। एक मकान जैसा दिखाई पड़ रहा है जो कि व्हाइट कलर में है।

सामने एक फेवीक्विक का पैकेट टंगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीछे की दीवाल पिंक कलर की दिखाई पड़ रही है और एक दीवाल व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रही है।

छोटी-छोटी मूर्तियां रखी हुई हैं जो कि बैठे हुए जो कि ऑरेंज कलर और रेड कलर में दिखाई पड़ रहे हैं। सामने एक बड़ी सी मछली दिखाई पड़ रही है जो कि ब्राउन कलर की है।

ने एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है जो कि रेड कलर येलो कलर में दिखाई पड़ रही है। यहां पे खिड़कियां दी हुई हैं। यहां पे खिड़कियों पे शीशे लगे हुए हैं जो कि बंद है। सामने एक रेलिंग जैसा दिख रहा है। वहां पर ब्राउन कलर के लोहे वाली रेलिंग दिखाई पड़ रही हैं और छज्जा --

ने एक मूर्ति बनी हुई जो किसी गेंडे का है जो कि सिप गिल सिल्वर कलर और ग्रे कलर में दिख रहा है। ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है। साइड में एक आदमी भी खड़ा हुआ है। नीचे का स्टैन्ड जेैसा बना हुआ है। और ब्लू --

सामने एक ब्लैक कलर का पाइप दिखाई पड़ रहा है। पीछे दिवाल दिख रही हेै जो कि ऑरेंज कलर येलो कलर में दिखाई पड़ रही है। साइड मे ईंटें दिखाई पड़ रहे हैं जो के येलो कलर में दिखाई --

यहाँ पर सामने इस पे कुछ घास उग रही है जोकि ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे साइड में कुछ घास लगी हुई है। यहाँ पीछे आसमान का कलर कुछ ब्लू कलर ग्रीन और ग्रे कलर में दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर साइड में कुछ पत्थर लगे हुए दिख रहे है।

सामने एक किला जैसा दिख रहा है जो के ऑरेंज वाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है यहाँ पर सामने एक बड़ा सा गेट लगा हुआ है जिसपे कुछ चित्र बने हुए दिखाई पड़ रहें है।

में दिखाई पड़ रहा है ऊपर आसमान का कलर ग्रे कलर व्हाइट कलर में दिखाई पड़ रहा है यहां पे साइड में एक मकान भी बना हुआ दिख रहा है।